एक बैंक के अंदर का फोटो है माउस और कंप्यूटर रखा गया है उसी के ऊपर एक स्टेपनर पेन और डायरी भी रखी गई है।

यह बहुत सुन्दर मंदिर है मंदिर के आगे की भाग पर बहुत सारी देवी देवताओ की मूर्ति और आकृति बनाई गयी है यह मंदिर --